है काफी अच्छी जगह पे है और बहुत अच्छी तरह से बैठाया गया है।

ये सरदार बुक स्टैंड है।

यहाँ पे अगल बगल भी और सारी दुकान है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

यह अ ये स्कूल है शायद या ऑफिस वेगेरा होगा जो भी होगा।

ये मकान तैयारी हो रहा है। सिर्फ एक पिलार डाल के छोड़ा गया है बड़े-बड़े और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके बगल में शायद फूल वगैरा भी है। चेटी रखा गया है कुदारी भी है। यानी काम करने वाला सभी औजार यहाँ पे रखा गया है।

ये जगह अच्छा है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है। काफी सुन्दर है।